और कुछ इंसाने भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा पोस्टर भी चिपकाया हुआ है।

टेलीफोन भी नजर आ रहा है।

बैठने के लिए सोफा भी लगाया--

बैठने के लिए कुर्सी भी है और उसके पीछे एक बड़ा सा दीवार भी नजर आ रहा है।

और लड़की ने हरा रंग का सारी पहना हुआ है और बाल पर सफेद रंग का फूल भी है।

कुर्सी चेयर भी दिखाई दे रहा है और सामने पर टेबल भी है और सामने पर एक भी चिपकाया हुआ है।

और कुछ पेड़ भी उगा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर पर मुझे एक हरा रंग का घर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर मुझे एक होटल नजर आ रहा है और होटल के अंदर कुछ इंसान है खाना खाता हुआ दिख रहा है।

तस्वीर पर मुझे एक कमरा नजर आ रहा है कमरे के अंदर एक सफेद रंग का बिस्तर भी लगाया हुआ और सामने पर स्विच बोर्ड भी है।

टेबल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा झील दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

पौधा भी दिखाई दे रहा है।

और कमरे के अंदर बहुत सारा लाइट्स जला हुआ दिखाई दे रहा है।

और रैक के अंदर बहुत सारे डिबे रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ कार भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद और लाल है।

दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है।

तस्वीर मे मुझे हॉस्पिटल नजर आ रहा है और लेटने के लिए बेड भी लगाया हुआ है।

और खुला आसमान भी दिख रहा है और सामने पर एक बड़ा सा गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग का रंग सफेद और ब्राउन रंग का है।

बच्चों के हाथ पर झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक सफेद रंग का ए_सी भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड नजर आ रहा है।

तस्वीर मे मुझे एक गमला नजर आ रहा है।